कुछ माला लगे हुए दिखाई दे रही है एक काउंटर रखा हुआ दिख रहा है।

बेड के ऊपर एक बेग दिखाई दे रहा है लाइट चल रही है।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

यहाँ पर मुझे कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के बाहर कुछ नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी विंडो दिखाई दे रही हैं एक गेट भी दिखाई दे रहा है।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

यहाँ पर मुझे एक बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है एक गेट दिखाई दे रहा है कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ में मुझे एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के किनारे एक शो रूम दिखाई दे रहा है।

रूम के ऊपर होंडा नाम लिखा दिख रहा है एक गेट बना हुआ दिख रहा है।

दुकान के बाहर पोस्टर लगा है कैस्ट्रॉल बाइक पॉइंट इमरान ऑटो केयर --

यहां पर कुछ लोग दुकान के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर मुझे एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क के किनारे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ यहां पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान दिख रहा है।

और कुछ टॉफीयो के डिब्बे पड़े है अंडे के ट्रे पड़ी है।

बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी लाइटिंग से डेकोरेशन किया हुआ दिख रहा है एक सड़क दिखाई दे रही है यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा हैं।

यहां पर मुझे खाली मैदान दिखाई दे रहा है मैदान के अंदर बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई दिख रही हैं।

कुछ लाइटिंग यहाँ पे जलती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोग यहाँ दिखाई दे रहे है ऊपर अँधेरा दिख रहा है।

एक खिड़की भी यहां दिखाई दे रही है आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान दिख रहा है।

यहां पर मुझे बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई दिख रही हैं।

बिल्डिंग के बाहर एक गेट बना हुआ दिख रहा है।

यहां पर मुझे एक हवेली दिखाई दे रही है उसमें बहुत सारी विंडो दिख रही है।

यहाँ पर मुझे एक दुकान दिख रही है दुकान के अंदर बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई दिख रही है।

कुछ कांच लगे हुए दिख रहे हैं ऊपर बेलन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे मुझे एक स्तम्भ बना हुआ दिखाई दे रहा है स्तम्भ के बाहर एक ठेला गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है।

यहाँ पर मुझे एक घर दिखाई दे रहा है घर एक ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है एक खिड़की दिख रहा है एक दरवाजा दिख रहा है।

एक आदमी झाड़ू लगाते हुए दिख रहा है सड़क दिख रही है।

एक टावर लगा हुआ दिखाई दे रहा है आसपास बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ लोग यहां पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं आसमान दिख रहा है।

सड़क पर कुछ फूल गिरे हुए दिखाई दे रहा है एक पार्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है ।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

कुछ लाइटें यहां पर लगी हुई दिख रही हैं कुछ लोग यहां पर खड़े हैं।

और यहां पर कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं एक गेट दिखाई दे रहा है एक माता जी की तस्वीर लगी हुई दिखाई दे रही है।

आसपास कुछ और घर दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।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

यहां पर मुझे एक बाइक स्टैंड दिखाई दे रहा है।

और आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और आसमान भी यहां पर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पटाखे रखे हुए दिखाई दे रहे है कुछ राखी दिखाई दे रहे है बोर्ड लगा है एक वाट लगाया पटाखा जंक्शन लग लिखा हुआ दिख रहा हैं एक गाड़ी खड़ी है।